ए_टी_एम में कैमरे भी लगे होते हैं पीछे वाइट कलर की दरवाजा भी बना हुआ है ताला लगा हुआ है।

ये फैमिली और फ्रेंड अ फास्ट फूड है।

फैमिली फ्रेंड्स और यहां पे एक शीशे का गेट लगा हुआ है।

समान खरीदने आते हैं और ब्राउन कलर के डब्बे रखे हुए है एक बैठने वाला कुर्सी रख--

ये तिरंगे लगे हुए हैं और यहां पे छत पे ए_सी लगी हुई है ब्लैक कलर की एक लड़के ने टी शर्ट पहना हुआ--

यहां पे एक बहोत बड़ा पार्क है सामने बस स्टेशन है ये काउंटर है काउंटर पर लोग टिकट लेने आते हैं गांव जाने के लिए।

बहोत सारी बस खड़े है टाइमिंग से अपनी बस निकलेगी लोग यहां पे आ रहे हैं।

वगैरा रखे है स्टील का ये अलमीरा बना हुआ लोहे का--